ये दृश्य में एक स्टेज नजर आ रही है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया है।

और इसके सीलिंग पे लाइटें भी लगी हुई है।

जो येलो कलर की है और उसमें बहुत सारी खिड़कियां और दरवाजे भी दिखाई दे रहे--

और उसके किनारे पे बहुत सारे घर नजर आ रही।

इ दृश्य में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

और एक व्यक्ति स्टेज पे खड़ा होकर माइक से कुछ बोल रहा है।

ये बहुत ही खूबसूरत नजारा लग रहा है।

और उसपे झंडे चुनरी नजर आ रही है।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

दृश्य में जिम करने की जगह दिखाई दे रही है।

जो कि कुछ लोग जिम करते हुए पिक में है।

और सेटर भी लगी हुई है।

ये हरे हरे घास उगे हुए हैं और पेड़ भी नजर--

दृष्ट में एक प्लंबर की दुकान नजर आ रही है।

जिसमें बहुत जिसके दीवार पे सीलिंग बना करके बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं।

जिसपे यलो कलर की चेयरे रखी हुई है और--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

और लाइटे भी लगी हुई है और वाइट कलर की रैक भी बनाया हुआ है।

दीवार पे लिखा हुआ है फीडरिलियल बैंक।

जिसपे काउंटर बनी हुई हैं और उसके काउंटर पे नीले और ऑरेंज कलर की बॉर्डर भी बनी हुई--